एक टॉवर लगी दिखाई दे रहे हैजिसपे से वायर जाते हुए दिखाई दे रहे है सैम सामने बहुत सारी पड़े पौध दिखाई दे रहे है उसके उपर कुछ टॉवर पाईप दिखाई दे रहे है।

पीछे गार्डन जैसा कुछ दिखाई दे रहा हैजिसके अन्दर कुछ दिखाई दे रही है पेड़ पौधे दिखाईं दे रहा है आसपास सामने फर्श लगी--

दिखाई दे रहे है निचे के साइड में कुछ बलोकन बने दिखाई दे रहे है और सामने कुछ --

यहां किसी नदी का किनारे बनाया हुआ फोटो दिखाई दे रहा है उसके सामने मुझे कुछ बनाई दिखाई दे रह है जहा पर कुछ झाड और कुछ पहाड़ जेसा दिखाई दे रहा हैऔर कुछ पत्ते पंती के अंदर दिखाई दे रहे है नदी मे पानी दिखाई दे रहा है सामने मकान जैसा कुछ बना दिखाई--

आसपास कुछ झाड़ी इलाका दिखाई दे रहा है पीछे की साइड कुछ पहाड़ी इलाका दिखाई दे रहा है निचे साइक में कुछ मिटटी है ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है उसके ऊपर छोड़े हुए पौधे वोधे दिखाई दे रहा है।